यह एक मूर्ति है जिस पर स्वर्गीय सुगम प्रसाद मुखिया जी का नाम लिखा हुआ है।

और एक व्यक्ति तो काफी ऊपर तक जा पहुंचा है।

यहाँ पर फूल गोबी गाजर लहसन नींबू --

जिसमें कम से कम आठ-दस स्पीकर नजर आ रहे हैं।